कमल के ऊपर बैठे हुए है और नीचे टाइल्स लगे हुए मंदिर--

मतलब एक कांच वाली खिड़कियाँ लगी हैं अंदर से दिक--- दिख रही हैं और तीन-चार लोग खड़े हैं।

सामने एक क्या कहते है मीनारा टाइप का बना हुआ है कुतूममीनार की तरह।

ये सामने पहाड़ी इलाका है जंगल का बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जंगली इलाका है।

क्लासेज बाई राजीव सिंग श्री क्लासेज बाई राजीव फॉर एट टू ट्वेल्व क्लासेस पढाते हैं ये सब का।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गया शाखा ब्रांच है बाहर चेनल गेट है और शटर खुली है।